उसमें कई सारी मछलियां रखी हुई है।

कुछ मछली इधर भाग रही है कुछ उधर भाग रही है।

ऊपर में एक घड़ी लगाया हुआ है बड़ा सा।

ऊपर से धूप भी आ रहा है अगल बगल पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

बगल में और भी कई सारी घर बनाया हुआ है।

कुर्सी लगाया हुआ है बहुत सारे लोग है।

यहां प दुकान का दृश्य दिख रहा है दुकान में कई सारी लाइट लगाई हुई है अलग अलग।